और जो जेंट्स वहां से बाहर आ रहे हैं वो दिख रहा है येलो कलर का स्कूल पे पेंट किया हुआ है।

ओला ब्लू कलर में येलो ब्लैक कलर में मुझे फोर व्हीलर दिख रही है।

मुझे ये बर्ड हाउस दिख रहा है जिसमें काफी सारे वाइट बर्ड जैसे के--

दो विंडो है एक ए_सी है एक ब्राउन कलर का डोर है ये सब ऑफिस में दिखाई दे रहा है इस फोटो के अंदर।

ट्रोली दिखाई दे रही है जो साइड में पड़ी है और जो अ ऐसी ही कहीं कच्ची जगह पे पड़ी है जिसके आजू बाजू टाइल्स --

टू नाइंटी एट्टी का बोर्ड लगा हुआ है।

मुझे पुराणा हवेली या तो किल्ला स्टाइल में एक--

काफी अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है।

ब्लैक चेयर और ब्लैक टेबल करके पूरा--

एक कंबाइन बना के डि डाइनिंग टेबल स्टाइल में रखा है।

स्पोर्श शॉप दिखाई दे रहा है जिसमें काफी स्पोर्ट्स की --

वाइट ट्रांसपरेंट और अलग अलग पाउचेस पे अलग अलग रबर को लगा के सेटलमेंट में रखा गया है वो दिखाई दे रहा है।

और क्लासेस का कुछ बैनर लगा हुआ है नीचे ब्लै वाइट बोर्ड दिख रहा है प्रिंटेड टाइल्स दिख रही है और पूरा क्ला --

मुझे यहां पे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है उस ऑफिस में--

और दूसरे टेबल के इसपे लैपटॉप पड़ा है।

पूरा का पूरा अच्छे से व्यू बनाया हुआ डमी स्टाइल में बनाया हुआ उन्होंने डेकोरेशन में रखा है दिखाई दे रहा है आजू बाजू ग्रीनरीस है।

ये एक मुझे एक पाइपलाइन दिखाई दे रही है।

मुझे फोटो में सुबह का एटमॉस्फियर दिखाई दे रहा है।

जैसे थमले पे लाइट के पूरे बोर्ड बने होते हैं वो दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां ब्लू आसमान दिखाई दे रहा है उसके--

मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

अच्छे से बना हुआ और उसके उधर फोर व्हीलर --

मुझे एक कैटलिक टीचर दिखाई दे रही है स्कूल का नजारा दिखाई दे रहा है क्लासेस चल रहे हैं।

और बड़ई सी एक ट्रे दिखाई दे रही है आसमान का व्यूस स्काई ब्लू दिख रहा है।

और एक वैष्णवी इलेक्ट्रिसिटी फर्नीचर का वो दिखाई दे रहा है वाग बकरी चा ऐसे करके ग्रोसरीज़ का शॉप दिखाई दे--

जो अटेच टेबल बना हुआ है वाइट कलर का टेबल है और टेबल के ऊपर एक इशट्रे रखी हुई है।

ट्रांसपरेंट विंडो और डोर बने हुए हैं वो दिख रहा है।

मुझे बस स्टेशन दिख रहा है जहां काफी सारी बस हैं।

खुल्ला वातावरण दिख रहा है और टू व्हीलर आते जाते दिख रई है काफी कुछ उधर ऐसा व्यू दिख रा है।